मुझे एक किराना दुकान दिखाई दे रहा है किराना दुकान के अंतर्गत बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे है इस के अंदर साबुन निरमा तेल हल्दी मिर्चा आदि चीज़ें दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर एक तालाव दिखाई दे रहा है तालाव के अंतर्गत बहुत सारे लड़का लड़कियां दिखाई दे रहे है और और वह लोग नाव में बैठे हुए है और आसपास बहुत सारा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

बगल मे बाइक और कार भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और सीढ़ी भी है।

मुझे कुछ मेज जैसा स्थान दिखाई र दिखाई दे रहा है उस स्थान में कई लड़का-लड़किया बैठी हुई है और य यहाँ पर कुर्सी रखा हुआ है।

वहाँ पर सीमेंट गिट्टी रेती घमेला तसला गार्डन जैसे कुछ इसतान दिखाई दे रहे हैं।

और उसके सूंड के ऊपर बैठा हुआ है हाथी-हाथी के दो कान है और उसके आस-पास जंगल दिखाई दे रहे है।

मुझे मुझे यह बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के आसपास कई सारे बिल्डिंग और लड़कियां भी बिल्डिंग के ऊपर में चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के --

मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के आसपास बहुत ही सुन्दर स्थान दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर एक गुलाब दिखाई दे रहा है गुलाब फूल बहुत सुंदर है गुलाब के आसपास पानी का झोंका दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे गोंदा का फूल भी दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर है।